और ऊपर की तरफ सामने कुछ टोकरी लटकी हुई हैं और साइड में कुछ और बिल्डिंग --

नीचे की तरफ एशियन पेंट्स का एक बोर्ड लगा है और सामने शीशा लगा हुआ है गेट पर।

वीवो के अंदर कुछ लाइटें जल रही हैं और ऊपर छजले पर कुछ लाइटें लगी हुई हैं।

और पीछे छत पर एकं पंखा चल रहा है और कुछ लाइटे लगी हुई हैं।

और सामने की तरफ एक काउंटर है जिस पर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति बैठा हुआ है कुर्सी पर।

इस फोटो के अंदर एक दुकान दिखाई गई है जिसमें सामने की तरफ लोहे की रैक लगी हुई है और साइडों में लगी हुई है।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

और दीवार पर एक एल_ई_डी लगी हुई है और एक पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो के अंदर एक बड़ा सा हॉल दिखाया गया है जिसमें सामने की तरफ एक शीशा है।

और अंदर की तरफ कुछ रैक बनी हुई हैं जिनमें बहोत सारी किताब रखी हुई हैं और नीचे काउंटर में कुछ स्टीकर चिपके हुए हैं।

और साइडो में घास खड़ी है और छोटी-छोटी झाड़ियां खड़ी हुई हैं और एक गठरी पड़ी है जिसमें घास है।

और पीछे के साइड में कुछ बिल्डिंग है और कुछ लाइटे दिखाई दे रही हैं और ऊपर बिजली के तार दिखाई दे रही हैं।

और इन रैकों के ऊपर शीशा लगा हुआ है और सामने कुछ मालाएं टंगी हुई हैं।

और साइड में एक प्लेट रखी है जिसमें हल्दी और चंदन की कटोरियां रखी हुई हैं एक औरत खड़ी है और एक लड़का खड़ा है।

और सामने एक टेंट दिखाई दे रहा है जिसमें झूमर लटका हुआ है और कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

इस फोटो के अंदर एक पहाड़ों के बीच से झरना दिखाई दे रहा है जिसमें से एक पानी की धार निकल रही है।

इस फोटो में एक बेडरूम दिखाया गया है जिसमें सामने एक बेड पड़ा है।

नीचे एक प्रदूषण जांच केंद्र का छोटा सा केबिन बना हुआ है और सामने एक सी_एन_जी का छोटा सा बैनर लगा हुआ है।

नीचे की तरफ एक स्टूल बना हुआ है जिस पर कुछ सामान और रखा हुआ है।

इस फोटो के अंदर एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाया गया है जिसमें नीचे घास है।

इस फोटो के अंदर एक कच्ची रोड दिखाई गई है जिसके बीच में कुछ पन्नी पड़ी हैं और एक बीच में ड्रम रखा हुआ है जिस पर गोवर्धन टूरिस्ट ढाबा लिखा हुआ है।

और सामने एक लोहे का गेट है जिस पर काला कलर है और पीछे कुछ बिल्डिंग दिखाई गई है और कुछ पेड़ दिखाएं गए हैं।

इस टिन के छत के नीचे कुछ लोहे के पाइप बने हुए हैं और सामने एक बोर्ड है।

और नीचे की तरफ कुछ ईट बिछी हुई हैं और पीछे कुछ दरवाजे और खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

ओर इस गेट के साइड में एक झड़ी लगी हुई है और कुछ झंडिया लोहे की रेलिंग पर लगी हुई है।

ये कुछ मूर्ति दिखाई गई है भगवान जी की और एक त्रिशूल दिखाया गया है।

और पीछे की तरफ दीवार पर टाइल्स लगी हुई है और ऊपर मूर्तियों दीवार पर छपी हुई है।